सामने बहुत बड़े-बड़े पत्थर है जहाँ पर फूलों से सजावट की गई है और कुछ लोग पत्थर के पास खड़े है।

और कुछ बैठे हैं पत्थर के किनारे-किनारे पेड़ - पौधे भी लगे हुए हैं।

सामने तीन से चार बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं जहाँ पत्थर के नीचे दो लड़के बैठे हैं।

सामने एक नदी है और नदी के बीचों बीच एक ओवरब्रिज है जिसमें से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं और कुछ लोग बाइक से आ रहे हैं।

सामने रोड है और जहां पर फादर भी हैं और कुछ लोग आस पास है और कुछ लोग बाइ मे आ रहे हैं और कुछ लोग पर्स रखे हुए कहीं जा रहे हैं।

सामने बहोत सारे बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं जहाँ पर एक लड़का रंगीन टी-शर्ट पहने हुए पत्थर को पकड़ कर खड़ा है।